तस्वीर में मुझे एक बहुत ही बड़ा रास्ता नज़र आ रहा है और रास्ते के आजुबाजु में बहुत बड़ा समुन्दर नज़र आ रहा है।

तस्वीर में मुझे एक रास्ता नजर आ रहा है और रास्ते के बाजू में एक बड़ा-सा मंदिर नजर आ रहा है।

कपड़े डली हुई है मैं भी अपने कपड़े धो कर छत पे रस्सी में डाली करती हूँ।